रास्ते में बहुत सारा पानी भी जमा होके है।

जमीन में एक ग्रीन कलर का बॅकेट भी रखा हुआ हैं।

यह सीलिंग के ऊपर भी बहुत सारे लाइट जल रहा है।

कोने में एक ग्रीन कलर का टेबल भी दिख रहा है।

सामने एक मीटर नापने वाला मशीन भी दिख रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक कमरा नजर आ रहा है इस कमरे के अंदर एक छोटा सा बेड भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक ऑरेंज कलर का दीवार दिख रहा है दीवार के कोने में भी एक गेट नजर आ रहा है।

सीलिंग के ऊपर भी बहुत सारा पंखा हैं।

इस फोटो मे मुझे एक कमरा नजर आ रहा है।

रेस्टोरेंट नजर आ रहा है इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे चेयर्स भी रखा हुआ है चेयर के सामने कुछ टेबल भी दिख रहा है दीवार में बहोत सारा फोटो फ्रेम भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर में मुझे एक मिठाई का दुकान दिख रहा है।

बहुत सारे मिठाई शीशा के बॉक्स के अंदर रखा हुआ है।

दो इंसान मिलकर एक बेग को भी उठा रहा हैं।

इस दुकान के अंदर बहुत सारे कलर के डिब्बे भी रखा हुआ--

सामने बहुत सारा पौधा भी लगा हुआ है।

सामने कुछ प्लास्टिक के चेयर भी रखा हुआ है कोने में एक पौधा भी नजर आ रहा है पौधे के सामने एक इनवर्टर भी दिख रहा है।